पानी का बड़ा सा डेम है डेम के ऊपर से पानी आ रहा है।

बड़ा सा पानी का ट्रक रखा हुआ है। उस ट्रक पर सफ़ेद और नीले कलर का पेंट --

राना सा बिमो पर एक मंदिर बना हुआ है। उसके बिमो पर खुरचे से हैं।

बिल्डिंग के सामने हरा भरा सा गार्डन है गार्डन के चारों तरफ से सड़क निकली हुई है।

सीड़ीओ से थोड़ी ही दूरी पर एक मोटर साइकिल खड़ी हुई है।

लगी हुई--हे गेट के अंदर पार्क मे हरे भरे से पेड़ लगे है।